हरी हरियाली भी छाई है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ छोटे छोटे पेड़ भी है ये गाड़ी भी रखी है चार पाँच झण्डे भी दिखाई दे रहे है बहुत काला काला है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर फूल भी फूल रहे है और चार पाँच गाड़ी भी रखी है बहुत अच्छी लग रही--

और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे इसमें कुछ लगा भी है और लाइट के खंभे भी लगे और हमे वो दिखाई नहीं दे रहा है एक छोटा-छोटा एक काला भी दिखाई नहीं दे रहा --